synfig का उपयोग करके bouncing ball animation के इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम synfig के इंटरफ़ेस के बारे में सीखेंगे
हम मूल आकृतियाँ बनाना और रंग भरना भी सीखेंगे
keyframes और waypoints जोड़ना
squash effect के साथ बॉल animation बनाना
आउटपुट को gif फ़ॉर्मैट में रेंडर करना
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ
dash home पर जाएँ और synfig टाइप करें
आप logo पर क्लिक करके भी synfig खोल सकते हैं
यह synfig का इंटरफ़ेस है
menu bar शीर्ष पर स्थित है
standard toolbar menu bar के नीचे स्थित है यहाँ हमें कुछ शार्टकट और handles ऑप्शन मिलते हैं
इसके बाद क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर rulers मिलते हैं
tool box इंटरफ़ेस के बाईं ओर स्थित है
tool box के एकदम नीचे दो बॉक्स हैं
ऊपरी बॉक्स काले रंग का है और टूल टिप इसे outline color कहती है
निचला बॉक्स सफ़ेद रंग का है और टूल टिप इसे fill color कहती है
मध्य में canvas है जहाँ हम अपना animation बनायेंगे
canvas के नीचे animation panel है
यहाँ हम animation से संबंधित बटन देख सकते हैं
इंटरफ़ेस के नीचे बाईं तरफ़ parameters panel है
जैसे ही हम canvas पर कोई ऑब्जेक्ट बनायेंगे parameters दिखाई देने लगेंगे
इसके आगे keyframes panel है यहाँ हम keyframes जोड़ेंगे
इस पैनल के दाईं ओर हम time track panel देख सकते हैं
यहाँ हम animation के waypoints और key frame के संकेत देखेंगे
जैसे ही हम canvas पर कोई animation बनायेंगे waypoints दिखाए देने लगेंगे
इंटरफेस के नीचे दाईं तरफ़ layers panel है
layers panel के ऊपर हम tool options panel देख सकते हैं
और इस पैनल के ऊपर आप canvas browser देख सकते हैं
palette editor
navigator और info panels
जैसेजैसे हम आगे बढ़ेंगे हम इन सभी का उपयोग करने के अभ्यसत होते जाएँगे
आइए अब हम अपना पहला animation शुरू करते हैं
सबसे पहले हम बैकग्राउंड बनायेंगे
tool box पर जाएँ rectangle tool पर क्लिक करें
tool options panel में हुए परिवर्तन पर ध्यान दें
layer type के अंदर हम बहुत सारे आइकॉन देख सकते हैं
create a region layer icon चुनें इस डेमो के लिए हम अन्य सेटिंग्स को वैसा ही छोड़ देंगे
अब canvas के 3/4 हिस्से को कवर करते हुए एक आयत बनाएं जैसा दिखाया गया है
कृपया ध्यान दें कि डिफ़ॉल्ट रूप से भरा हुआ रंग सफेद है जिसका अर्थ है कि यदि हम canvas के बाहर चित्र बनाते हैं तो वस्तु को खोजना मुश्किल होगा
ध्यान दें कि layers panel में एक layer बनाई गई है
synfig इसे डिफ़ॉल्ट रूप से एक नाम देता है यहां यह rectangle060region है
layers को सार्थक नाम देना हमेशा एक अच्छी आदत है
इससे हमें layers की लंबी सूची में से किसी विशेष ऑब्जेक्ट को ढूँढने में मदद मिलती है
जब हम जटिल animations बनायेंगे तो आप इसकी और अधिक सराहना करेंगे
synfig इंटरफेस पर वापस आते हैं
मैं इस डिफ़ॉल्ट layer का नाम बदलकर sky कर दूँगी
तो नाम पर क्लिक करें sky टाइप करें और enter दबाएं
layer का नाम अब sky है
कृपया ध्यान दें कि कर्सर अत्यंत संवेदनशील है इसलिए पिछली क्रिया के दोहराव को रोकने के लिए यादृच्छिक रूप से क्लिक करने से बचें
आयत के लिए पैरामीटर parameters panel में बनाए गए हैं
color parameter खोजें और value कॉलम पर डबलक्लिक करें तुरंत एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा
rgb scrollers को ड्रैग करके रंग को नीले रंग में बदलें
अब इस डायलॉग बॉक्स को बंद कर दें
फिर transform tool पर क्लिक करें
फिर sky layer को डीसेलेक्ट करने के लिए canvas के बाहर क्लिक करें
अब पुनः rectangle tool चुनें
canvas के निचले हिस्से में एक और आयत बनाएं
पूर्व में दिखाए गए अनुसार लेयर का नाम बदलकर ground कर दें और रंग को हरे रंग में बदल दें
transform tool चुनें और layer को डीसेलेक्ट करने के लिए canvas के बाहर क्लिक करें
इसके बाद हम एक बॉल ड्रा करते हैं toolbox में circle tool पर क्लिक करें
layer type के अंदर create a region layer चुना जाना चाहिए
canvas के शीर्ष भाग पर क्लिक करें और एक वृत्त बनाएं
पूर्व में दिखाए गए अनुसार layers panel में लेयर का नाम बदल कर ball करें
रंग को बदल कर लाल करें
आइए अब बॉल को एनिमेट करना शुरू करें transform tool सेलेक्ट करें
animation panel में turn on animate editing mode आइकॉन पर क्लिक करें
स्क्रीन पर दिखाई दे रहा लाल आयताकार बॉर्डर यह दर्शाता है कि हम animation mode में हैं
current frame बॉक्स पर 9 दर्ज करें enter दबाएं
फिर keyframes panel पर क्लिक करें
यहां नया keyframe जोड़ने के लिए हरे प्लस साइन आइकन पर क्लिक करें
canvas पर बॉल चुनें
ध्यान दें बॉल के केंद्र में एक हरा बिंदु मौजूद है
बॉल को canvas के निचले हिस्से में ले जाने के लिए इस हरे बिंदु को ड्रैग करें
बॉल को दिखाए गए अनुसार ग्राउंड से थोड़ा ऊपर ले जाएं
ड्रैग करते समय सीधे मार्ग पर चलने के लिए shift key का प्रयोग करें
ध्यान दें time track panel पर waypoints बन गए हैं
आइए 11 वें फ्रेम पर चलते हैं एक बार फिर पूर्व में दिखाए गए अनुसार एक नया keyframe जोड़ें
बॉल को थोड़ा नीचे लाएँ जैसे कि बॉल जमीन को छूती हो
बॉल के चारों ओर नारंगी और पीले बिन्दुओं पर ध्यान दें इन्हें handles कहा जाता है
स्क्वैश इफ़ेक्ट देने के लिए दिखाए गए अनुसार handles में मौजूद नारंगी बिंदुओं का प्रयोग करके बॉल के आकार को बदलें
time cursor को 13 वें फ्रेम पर ले जाएं
keyframes panel पर 9 वाँ फ्रेम चुनें
नीचे duplicate आइकन पर क्लिक करें
time cursor को 24 वें फ्रेम पर ले जाएं
keyframes panel पर शून्य फ्रेम चुनें
पुनः नीचे duplicate आइकन पर क्लिक करें
शून्य फ्रेम पर जाएं बॉल को डीसेलेक्ट करने के लिए canvas के बाहर क्लिक करें
हमारे द्वारा बनाए गए animation को देखने के लिए play बटन पर क्लिक करें
अब pause बटन पर क्लिक करें
अंत में हम फ़ाइल को सेव करते हैं
file पर जाएं और save पर क्लिक करें मैं desktop में सेव करूँगी
synfig फाइल को एक डिफ़ॉल्ट नाम देता है जैसा कि आप यहां देख सकते हैं
मैं इस नाम को बदल कर bouncingball कर दूंगी
ध्यान दें कि उपलब्ध synfig फाइल एक्सटेंशन dot sifz dot sif dot sfg हैं
मैं dot sifz फ़ॉर्मैट चुनूँगी
save पर क्लिक करें अब आइए एनीमेशन रेंडर करते हैं
file पर जाएँ और render पर क्लिक करें
render settings डायलॉग बॉक्स खुलता है
अपनी पसंद के अनुसार gif एक्सटेंशन के साथ एक उपयुक्त फ़ाइल नाम दें
सहेजने का स्थान चुनने के लिए choose बटन पर क्लिक करें
मैं desktop चुनुँगी और फिर ok पर क्लिक करूँगी
target ड्राप डाउन मेनू पर क्लिक करें और magick++ चुनें
प्लस साइन पर क्लिक करके quality को अधिकतम यानी 9 तक बढ़ाएं यह मान कभी भी 3 से नीचे नहीं होना चाहिए
image सेटिंग्स को ऐसे ही रखें
time टैब पर क्लिक करें यहां frame rate 24 एफपीएस होना चाहिए
यह झटकारहित प्रवाही animation देगा
end time को बदल कर 24 कर दें क्योंकि हमारा animation 24वें सेकंड में समाप्त हो जाता है enter दबाएं
अंत में नीचे मौजूद render बटन पर क्लिक करें आउटपुट को रेंडर करने में कुछ सेकंड लग सकते हैं
अब मैं desktop पर जाती हूँ जहां मैंने अपनी gif फ़ाइल को सेव किया है
हम firefox या किसी भी वेब ब्राउजर का प्रयोग करके animation चला सकते हैं
कृपया ध्यान दें कि आपको यह animation प्ले करने के लिए internet connection की जरूरत नहीं है
इसके साथ ही यह ट्यूटोरियल समाप्त होता है
आइए सारांशित करते हैं
इस ट्यूटोरियल में हमने synfig के इंटरफ़ेस के बारे में सीखा
हमने मूल आकृतियाँ बनाना और रंग भरना भी सीखा
keyframes और waypoints जोड़ना
squash effect के साथ बॉल animation बनाना
आउटपुट को gif फ़ॉर्मैट में रेंडर करना
यहां आपके लिए एक असाइनमेंट है एक ढालदार मार्ग में एक बॉल animation बनाएँ
आपका पूर्ण किया हुआ असाइनमेंट ऐसा दिखाई देना चाहिए
यह वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है कृपया इसे देखें और डाउनलोड करें
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं आयोजित करती है
ऑनलाइन परीक्षण पास करने पर प्रमाण पत्र देती है अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें
यदि इस स्पोकन ट्यूटोरियल से संबंधित आपके कोई प्रश्न है तो कृपया इस साइट पर जाएं
वह मिनट और सेकेंड चुनें जहां आप प्रश्न पूछना चाहते हैं
अपने प्रश्न के बारे में संक्षेप में बताएँ हमारी टीम में से कोई उनके जवाब देगा
स्पोकन ट्यूटोरियल फोरम इस ट्यूटोरियल पर आधारित विशिष्ट प्रश्नों के लिए है
कृपया असंबंधित एवं सामान्य प्रश्न पोस्ट न करें इससे अव्यवस्था को कम करने में मदद मिलेगी
कम अव्यवस्था के साथ हम इन चर्चाओं को निर्देशन सामग्री के रूप में प्रयोग कर सकते हैं
spoken tutorial project nmeict mhrd भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित है
यह ट्यूटोरियल अमित कुमार द्वारा अनुवादित है आईआईटी बॉम्बे से स्पोकन ट्यूटोरियल एनीमेशन टीम के साथ मैं ज्योति सोलंकी आपसे विदा लेती हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद